एक अंकल अपना फोटो खिंचवा रहे हैं।

यह एक मेले का मेले में दुकान का चित्र है।

जहां पर पंद्रह रूपये में जूलरी मिलती है।

साथी साथ यह शाम का मौसम है यह बहुत सुंदर लग रहा--

और यहां सर बच्चों को शायद तक--

यह मंदिर की दीवारें व्हाइट और ऊपर की पट्टी--

इसमें लॉर्ड बुद्धा जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं।